यह एक किराने की दुकान हैं और यह दुकान बहोत बड़ी है। इस दुकान में बहोत प्रकार की --

पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे शिक्षक होते हैं जो की उन्हों उन्हें पढ़ाते हैं तरह से।

इस दुकान में बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं और लोग यहाँ पे आते हैं कपड़े खरीदने।

इस झरना में लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पे घूमने में भी बहोत अच्छा लगता है।

झीले पे लोग आके उसका नजारा देखते है और बोहोत अच्छा लगता है।